चलते हुऐ दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ लोग खड़े हुऐ हैं। इस पिक्चर में बहोत सी सजावटें की गई हैं।

है तथा एक सर लडकियों को पढ़ाते हुवे दिखाई दे रहे है। सभी लड़कियों के पास एक कॉपी तथा एक पेन है।

खेत की किनारे कई सारे बड़े पेड़ भी हैं। यह खेत बहोत

पिक्चर में सभी व्यक्ति अपने पेट को दबाये हुए दिखाई रहे हैं।

बिल्डिंग के बाहर बारजे बने हुए हैं। बारजे पे लोहे की रिंग लगी हुवी हैं।

कुछ लड़कों ने कागज के पेपर से लैंप बनाया है।